एक बकरी का मेमना बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके पाँच पास में कुछ--

यह एक किसी दुकान का फोटो है जिसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कप लगे हुए हैं।

पास में कुछ पेड़ लगे हुए हैं एक येलो कलर का टीन सेट लगा हुआ जो छाया के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

आस पास में कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए है।

यह एक मॉल की तस्वीर है जहां पर विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट रखे हुए--

आसपास में एक कंपनी की लेबल लगी हुई है।

और आसपास में विभिन्न प्रकार की तस्वीरें जो लगाई गई हैं फ्रेम ।